कैट्सन सभी लोहे बलून लगे हैं व्हाइट कलर के और रेड कलर के।

एक गर्ल बैठी है जिसने पिंक कलर का बैग किया हुआ है।

एक खेत है वहां पे पानी लगाया है उसके अंदर --

और इधर वायर भी लगी है बहोत सारी नीचे की तरफ घास भी है।

एक मस्जिद है मस्जिद के उप का कलर --

येलो रेड व्हाइट हैं और कार का कलर भी रेड व्हाइट ब्लैक हैं।

क्लासरूम है जिसके अंदर बहुत सारी बेंचेस हैं एक चार्ट भी पोस्टर मेकर वाला चार्ट भी बना हुआ है।

इसपे रेड ऑरेंज येलो फिरोजी कलर के है।

एक बिल्डिंग है बहोत बड़ी जिसके अंदर रेगीनर पासपोर्ट ऑफिस जालंधर का है।

और इधर भी ग्रास से दूर दूर तक घास ही नजर आ रही है।

बहोत सारे फ्लार हैं कोई पिंक कलर का है--

ग्राहकों के लिए नई सुविधा ए_टी_म कार्ड के लिए ए_टी_म से क्या निकल ली--

वह जूती चमड़े वाली भी है शूज़ भी बहुत तरह के हैं।